यहाँ पे ऑटो भी है एक व्यक्ति ऑटो को सुधार भी रहा है एक व्यक्ति उसके पास खड़ा हुआ है और अ खंबे भी है यहाँ पे चार-पाँच --

यहां मोग्नीनश के एक शॉप है मैनेजमेंट कृष्णाज और बहुत सारे केक रखे हुए बेकरी में पंखा है कूलर है यहां पे।

कांटा पड़ा हुआ है एक चम्मच भी पड़ी हुई है कारपेट के पास चम्मच रखी हुइ हैं एक त्रिकोण की तरह है ये।

एक मैदान को दर्शाया गया है| एक मैदान है उसके पास में एक बहोत बड़ा घर है घर के पास में एक नीम का पेड़ लगा हुआ--

बाहर पेड़ पौधे भी है टैंकर भी रखा हुआ है यँहा पे बॉक्स भी है यँहा पे कुछ व्यक्ति बैठे भी है और वाइट कलर का घर है उसमे रेड कलर की बॉर्डर भी है और बहुत सारे--